यह अ यहाँ पर बरगद के पेड़ और खजूर के पेड़ भी लगे हुए हैं।

यह आ भगवान भोलेनाथ जी का एक बहुत ही विराट स्वरूप--

फोन नंबर आठ थ्री सेवन सेवन फॉर वन --

यह एक रेलगाड़ी है यह गाड़ी यहाँ यह गाड़ी नीले रंग की है यह गाड़ी पटरी पर चल--

यह मूर्ति बहुत ही खूबसूरत दिखाई पड़ रहा है यह दोनों मूर्ति बहुत ही खूबसूरत है सभी औरते वहाँ --